ये जगह जहाँ पस दिखाया जा रहे है जिसमे की कुछ स्टैचू रखे हुए है कपड़े पहनाकर के और कोई सामने मे व्हाइट कलर के ग्लास है नीचे यहाँ पास कुछ सामान रखा हुआ है डब्बे में --

--और मकान है और आसमान है और नीचे छड़ है जोकि अच्छा दिख रहा है देखने में --